पता नहीं कहाँ गया है जी वो सामने एक दीवाल है जिसमे बहोत सारी चीज़े टंगी--

और आसमान कुछ व्हाइट जैसा नजर आ रहा है नीचे कुछ येलो येलो सा है उसके पास जाने के रास्ते भी है बहुत सारे पेड़-पौधे भी है।

ये एक मॉल टाइप जैसा लग रहा है जिसमे कुछ लोग खड़े हुए है और नीचे टाईल्स लगी हुई है बकायदा ऊपर कुछ छत है बगायदा जिसमे आप लेट सकते है।